और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं सभी चेयर पर--

जो विंडो है उसमें पर्दा लगा हुआ है पूरा--

ग्राउंड के चारों तरफ और बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और आसपास में बहोत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और चारों तरफ पहाड़ है जहां पर छोटी छोटी घास उगी हुई है।

यहां पर बहोत सारी हिरन एक गार्डन में चर रही है।

और कुछ सूर्योदय या सूर्यास्त का समय हैं।

पूरा आसमान नीला है और बहोत दूर कहीं कहीं छोटे पौधे दिख रहे हैं।

और कुछ दीवार की बॉन्डरी वॉल बनी हुई है सामने की तरफ बहुत सारे घर बने हुए दिख रहे हैं।

और बहोत ही सुंदर होटल बना हुआ है यहां।

यहां पर एक पार्क है जहां पर बहोत सारी हिरण खड़ी हुई है और कुछ बैठी हुई भी है।

और वहां पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ है सामने।

और सामने की तरफ बोहोत बादल हो रहे है काले काले।

सामने एक बोर्ड लगा हुवा हैं जिसपे कुछ नोटिस के--

टेबल पर ओर भी सामान रखा हुआ है एक वाइट चार्जर लगा है।

सामने एक सोफा है एक ब्लैक कलर के अलमारी भी रखी हुई--

वो जगह जगह पर आसन बिछे हुए है।

और ये जंगल का दृश्य बहोत ही सुंदर है क्योंकी हम बहुत अच्छी हरियाली--

और सभी बच्चे अपनी ड्रॉइंग बहोत अच्छे से बना रहे हैं पीछे की तरफ एक नीले कलर का पोस्टर लगा है ड्राइंग बनाकर--